इस बच्चे ने शोर्ट हेयर कट कराया है जोकि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये हेयर कटिंग --

गरबा डांस कर रही है।

इस स्कूल का नाम राष्ट्रा भारती पब्लिक स्कूल है यहां पर --

कार खड़ी हुई है जो कि एक काम चल रहा है पीछे बासुवा पड़ा हुआ है।

यह एक बड़ी बिल्डिंग का कार्य चल रहा है जिसमे कि सेंट्रिंग लगी हुई हैं।

एक साइड से देखा जा रहा है और भैंस दूसरी साइड से देख रही है।

यह एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें कि लोग क्रिकेट खेल रहे है और बहुत-से से लोग क्रिकेट के खेलने वालो को देख रहे हैं।